और दुकान के अंदर की तरफ बहुत सारी पानी की बोतले रखी हुई हैं।

नीचे में सिनेटरीपैड रखा हुआ है तैखाने में--

देखने में वाकही बहोत ज्यादा खुबसूरत लग रही है।

इसके बाहर में एक मोटरसाइकिल खड़ी है और मोटरसाइकिल के पीछे एक साइकिल खड़ी है।

और एक आदमी खड़ा है और एक आदमी ने एक बच्चे को गोद में रखा हुआ है।

और क्यू_आर कोड स्कैनर है जो की उल्टी तरफ रखा हुआ है।

ऊपर में बैगनी कलर का और गुलाबी कलर का फूल बना हुआ है।

जिसके सामने में एक आदमी कुर्सी लगा करके बैठा हुआ है।

दो तीन दुकानें भी हैं जो की एक दुकान के सामने दो कुर्सी लगा हुआ है।

और रोड पर एक मोटरसाइकिल भी लगी हुई है।

ये जो इसको चिकन लॉलीपॉप बोलते हैं और सेलिड भी रखा हुआ है प्लेट में।

और कुछ टेंट वगैरा भी बने हुए हैं।

और टेबल पर एक चाबी की गुच्छी पड़ी हुई है उसके बगल में फोन है।

और एक बड़ा सा मग है और ग्लास है।

उसके आस पास दो तीन लड़के लड़किया भी खड़ी है।

क्योंकि केक काट रहे हैं काले कलर का केक है।

इस फोटो में हमें कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो की कबड्डी खेल रहे हैं।

बहोत ज्यादा साफ सुथरा है और दो तीन लोग भी साइकल से जा रहे हैं।

और बेड के नीचे मे डस्टबिन भी रखे हुए हैं दो तीन--

लगे हुए हैं और एक मोटरसाइकिल भी खड़ी है।

इस फोटो में हमें एक कपड़े की दुकान दिख रही है जो बहुत बड़ी सी है।

इसमें हमें एक जिम की फोटो दिख री है जो कि एक आदमी खरा हुआ है बनियेन पेहेन के।

इस फोटो में बोहोत सारे लोग है जो की लाइन में लग कर के आगे की तरफ जा रहे हैं।

इसमें सामने की तरफ हमे एक सरकारी भवन दिख रहा है।